जो पिंक कलर यलो कलर ब्लू कलर में दिख रही है ऊपर और स्लेटी कलर का छत दिख रहा है और लाइट लगी हुई है वाइट कलर की दिख रही है।

और जो मकान बना हुआ है उसके सामने कुछ खाली जगह डली हुई है और कुछ खिड़कियाँ दिख रही है।

और वहाँ कुछ वृक्ष लगे हुए है जो दिख रहे है और एक लोहे की जाली बनी हुई है एक टेबल पर दो लेडिस बैठी भी हुई है।